सामने के तरफ एक बहुत बड़ी नदी नजर आ रही है। इसके पहली तरफ एक मंदिर नजर आ रहा है उसके नीचे तीन गेट नजर आ रहे है इस साइड भी सीढियां लगी हुई है।

सामने की तरफ हॉल कमरा नजर आ रहा है जिस पर काफी काउंटर नजर आ रहे है।

आ से भी है पीछे भी है साइड में हरे रंग के पर्दे टंगे हुए है।